ये खाने के लिए भी मिलते --

और उधर बिल्डिंग के ऊपर जो आउ मौसम बना है बहुत ही प्यारा --

जोकि बोहोत ही विशाल सा एक घर है।

आकाश बोहोत ही प्यारा लग रहा है।

एक आने का रोड एक जाने का रोड ।

जो यहाँ पे एक ए.टी.एम. भी दिख रहा है।

और पेट्रोल पंप पे जाने के लिए रोड भी बनाया गया है।

आंटी और अंकल फोटो क्लिक करने के लिए खड़े हैं जोकि --

यह एक स्वीटस्टार पब्लिक स्कूल है।

और एक फैन भी लगा है और ऊपर सीड डाला गया है इस जिम सेंटर में।

और एक इंसान कॉलेज की ओर जा रहा है और एक कॉलेज के साइड में एक पेड़ भी है।

और यहाँ कुछ लोग अंदर की ओर जा रहे हैं और कुछ लोग बाहर की ओर आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं और बिजली के खम्बे भी हैं।

यहाँ एक बहुत ही बड़ा सा होटल है जो की --

और जस्ट लाइट के साइड में ईटा का जो दिवार है ईटें में एक बिजली का बोर्ड भी दिख रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है।

और इस बस का नाम है कुनबर कुनबर बस हैं।

जस्ट शॉप के साइड मै एक दरवाज़ा दिख रहा है जो की बंद है और इस शॉप में बहोत सारी बोडी दिख रहा है बोडी के अंदर कुछ --